टी.वी. लगा हुआ है।

और उसके बगल में बहुत सारे पेड़-पौधे लगे हुए इस ग्राउंड में --

और शोकेस में उधर --

इसमें एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है।